सड़क के कोने में बहोत सारा स्ट्रीट लाइस भी लगा हुआ है।

पर एक बड़ा सा कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

कोने में एक स्पीकर भी खड़ा है।

गमले में कई सारा फूल भी लगा हुआ है।

घर में बहोत सारा ट्यूबलाइट्स भी लगा हुआ है।

पीछे में परदा भी लगा हुआ है।

सामने में कई सारे लोग भी खड़े हैं।

और आसपास बहोत सारे मिरर भी लगा हुआ है।

मे बाइक भी रखा हुआ है।

सामने में औरत बैठा हुआ है और ऊपर में --

ऊपर में एस_बी_आई कॉर्नर भी लिखा हुआ है।

बिल्डिंग पर बहुत सारे खिड़कियां भी लगा हुआ है।

डस्टबिन में बिल्डिंग के अंदर कई सारे प्लास्टिक --

बिल्डिंग के ऊपर में के_एफ_सी रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

कोने पे ब्लू कलर का कारपेट भी बिछा हुआ है।

दीवार पर वाइट कलर का रंग लगा हु--

ग्लास और पानी बोतल र--

कोने में एक छाता भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग के अंदर बहोत सारे कुर्सी टेबल --

और ऊपर में ट्यूब लाइट और पंखा भी लगा--

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग के अंदर बहोत सारे टी_वी दिखाई से रहा है।

सामने में पर्दा भी लटका हुआ दिखाई दे रहा--

दीवार पर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है।

ऊपर बहुत सारा पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

मेज का सामने में महामना मालवीय का स्टेच्यू भी रखा हुआ है।

पास पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर भी लगा हुआ है।